जो विद्यार्थी है वो सिविल ड्रेस में है।

सुंदर सा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ--

बहुत ही सुंदर पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

किसी दुकान की दिखाई दे रही है।

लाइटे भी दिखाई दे रही है।

ज्यादा व्यक्ति दिखाई दे रहे--

मछली मीट शॉप दिखाई दे रहीं--

उनको मछली दिखा रहा है।

यह फोटो किसी ट्रैफिक सिग्नल की दिखाई दे रही है।

पानी खड्डों में खड़ा हुआ है।

ब्राउन रंग के परदे लगे हुए हैं।

एक बहुत ही सुंदर मंदिर--

व्यक्ति ने सफेद रंग के--

इस बगीचे के आसपास बहुत ही सुंदर पेड़ लगे हुए हैं।

एक घर भी दिखाई दे रहा है।

अपने कुछ यंत्रों के साथ--

इस तस्वीर में बहुत ही सुंदर--

पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

सड़क भी दिखाई दे रही है।

अंदर बहुत ही सुंदर बेड लगा हुआ है।

इस तस्वी के अंदर--

यह एक बहोत बड़ी गाड़ी दिखाई दे रही है।